एक व्यक्ति टोपी लगाकर बैठे हुए एक हाथ उसमे जमीन पे जूता पकड़े है और एक--

--और भगवान की पूजा कर रही है।